ए में झाड़ी से कुछ सामान बन रहा है इसको टालते हुए लड़का दिख रहा है उसके बगल में कोई कड़ाही रखी हुई है।

एक टू व्हीलर खड़ी हुई है टूटी सी एक टू व्हीलर दिखाई दे रही है खड़ी ।

सामने दिवार पर बी.डी. --

नीली सी पहाड़ी दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग के पीछे।